हाथी है उसके बाद हा हाथी का दॉंत हैं।

पूरा बड़ा फील्ड सा है बहुत अच्छा लग रहा है गे --

और पेन लेकर लिख रहे है बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं पता नहीं हाथ --

ये पेट्रोल पंप है। ट्रक लगा हुआ है वहाँ पे एक आदमी है।

और ये सीढ़ी पे चढ़ कर जाना पड़ता है बगल में इधर गैरज बंद है और इधर भी बंद है और इसपे चढ़ के --

इसको चलाकर इसमें सैर कर रहें हैं घूम रहें हैं मजे ले रहें हैं।

और बच्‍चा है आगे में साइकिल चला रहा है मोटर साइकिल है बहोत सारा गाड़ी चल रहा है।

ये गार्डन है और गार्डन में पेड़ है इस पेड़ मे से एक पीला फूल दिखाई दे रहा है हरा-हरा पत्ती हैं।

उम्म मान मानस हेल्थ केयर क्लीनिक डॉक्टर शोभा कुमारी शालिनी शालिनी।

फिजीस फिजि शियन फिजिशियन शोभी एवं --

और इसमें बच्चा सब दिखाई नहीं दे रहा है और खिड़की है डिजाइन बहुत अच्छा है बाहर बड़ा सा फील्ड दिख रहा है।